यहाँ पर बहुत सारे बच्चे नीचे में बैठ कर पढ़ रहे हैं । नीचें में एक चट बिछाया गया है और बहुत सारे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं । यहाँ एक टीचर है जो कुर्सी में बैठ कर ये बच्चो को पढ़ाते हैं । यह बच्चे --

यह एक सड़क है। यह सड़क काफ़ी लंबी और अच्छी है। इस पर दो भैसे तो ही सड़क पर चल जा रहे है।

इस सड़क पे रोजाना कई गाड़ियां और बड़े-बड़े गाड़ी पार होते है यहां पर बहुत सारे लोग भी पार होते है।

यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल में ड्रॉइंग बना रहे हैं यहाँ पर अच्छे ड्रॉइंग बनाते हैं यहाँ पर एक शिक्षक है जो इन बच्चो को अच्छी चीजें बता रहे हैं ।